ये कोई एक मंदिर है। बड़ी सी

डाक सनरचनाएँ यहाँ पर लिखी हुई है।

केंची रखी हुई है एक बड़ी-सी।

ये यहाँ एक पोस्टर लगी हुई है नव वर्ष दो हज़ार एक्कीस की हार्दिक शुभकामनाएं लिखी हुई है।

होलसेल बुक सेलर भी लिखी हुई है इन पर।

यहाँ पे पोस्टर पे लिखी हुई है पतंजलि टेस्टी नमक ढाबा।

और उधर भी बहुत सारी गाड़ी खड़ी है। ये गेट है।

बैंक की गेट लगी हुई है। खुली है।